ओ ए बहुत ही काम में आता है किसी को गिफ्ट देने के लिए वा और कुछ करने के लिए गुलाब का फूल बोहोत काम में आता है तो बोहोत ही बढ़िया लग रहा है इस कलरफुल जो है।

यहाँ रेलवे स्टेशन दिख रहा हैं। यहाँ पर ट्रेन वगेरा खड़ा हुआ हैं प्लेटफॉर्म में और वह उसके तरफ हमे दिख रहा हैं कुछ पहाड़ जैसा ऊँचा सा जगह दे रहा हैं मतलब ऊँचा सा एरिया दिखाई दे रहा है तो बहोत ही बढ़िया हैं ये जो रेलवे प्लेटफॉर्म वगेरा -- <crosstalk>

रोड भी बहुत साफ़-सुथरा है और यहाँ पर एक डॉग वगेरा सोया हुआ है गर्मी की वजह से शायद ओ बहुत ही अच्छा लग रहा है ये जो महोल है।

थोड़ा बैम्बू भी कुछ रखा गया है और यहाँ पर आ सरिये का लोहे का भी कुछ वगैरह आ यह कर रहे हैं। ढ़लाई वगैरह स्टार्ट कर रहे है यह लोग तो बहोत ही बढ़ियाँ है यह जो कर रहे हैं काम कंस्ट्रक्शन वगैरह का --

कुछ स्टूडेंट वगैरह कुछ मेल है वो अपना जॉगिंग फिजकल एक्सरसाइज --

और बहुत ही बढ़िया होता है ए जो बैंक है | बैंक काम में बहुत लोग आता है यहां पर बोहोत सारे कस्टमर का भीड़ लगा हुआ रहता है तो बढ़ियां है यह जो बैंक है और देखकर ही पता चल रहा है बोहोत ही बढ़िया --